और पीछे एक ब्लैक कलर का भी टंगा हुआ है।

और कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

यह एक बस अड्डा है और इसमें कुछ बस खड़ी हुई है और यहां पे कुछ आदमी भी खड़े हुए हैं।

यह एक होटल सा बना हुआ है और इसमें तीन जीने लगे हुए हैं।

और दीवार में एक बोर्ड भी लग रहा है।

और दो करेट भी रखी हुई है और एक कुर्सी रखी हुई है।

और कुछ के मुंह पे माक्स लगे हैं और यहां पे एक बैनर भी लगा है।

यह एक बड़ा सा पानी का झरना है।

जिसमें ऊपर से पानी गिर रहा है।

और बाहर कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए है।

और उनपे कुछ भी रखे हुए हैं।

और कॉलेज में बहोत सारी खिड़की भी लगी हुई है।

जो इनका कलर दिखने में ब्लैक है और कुछ का रेड है।